झील में बहुत सारी नावें भी हैं।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

इस तस्वीर में हमें मछली मार्केट दिख रहा है।

और बहुत सारे लोग उससे मछली खरीद रहे हैं।

फ़र्श टायल से बनी हुई है कमरे में एक सोफे का रंग लाल है।

गार्डन के बीच में हमें एक वाटर फाउंटेन देखने को मिल रहा है।

गार्डन में बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं वृक्षों का रंग हरा है।

इस तस्वीर में हमें एक कमरा देखने को मिल रहा है।

सोफों का रंग लाल और सफेद है।

इस तस्वीर में हमें एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

फैक्ट्री में बीच में आग लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक व्यक्ति ने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

यह एक किताबों की दुकान है।

इसने सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है।

यह व्यक्ति एक ईटे पे खड़ा है।

पेट्रोल पंप के बगल में एक सड़क भी है।

पार्क में छोटी-छोटी घांसे दिखाई दे रही हैं।

घासों का रंग हरा है घास के बगल में बड़े-बड़े वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं।

इमारत के बाहर हमें छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कमरे में दो कुर्सियां भी हैं।

इस तस्वीर में हमें एक इमारत दिख रही है।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

इस कमरे की छत पर एल_ई_डी लाइट्स लगी हुई है।

कमरे में दो शीशे भी लगे हुए हैं।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

इस तस्वीर में हमें एक मार्केट दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति फूल बेच रहे हैं।

इमारत के बाहर हमें दो गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर दो लोग खड़े हैं।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

कमरे की छत पर एक पंखा लगा हुआ है।

मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

एक महिला लाल कलर की साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही है।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

यहां पर हमें दो डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं।

हमें इस चित्र में एक सोफा दिखाई दे रहा है।

सोफे का रंग काला है और वाइट भी है।

हमें इस तस्वीर में दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

नीले रंग का पोशाक पहना हुआ है।

मोचा लिखाई दे रहा है।

एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

घास दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गो डाउन का तस्वीर है।

कमरे में एक बहुत बड़ा सोफा भी लगा हुआ है।

कमरे में एक काला रंग का गेट भी है।